और इधर एक कुछ सामान धरने का है ये इसमें दो पहिए लगे हुए हैं ऊपर छत पड़ी हैं इसके अंदर व्हाइट सा कुछ रखा हुआ है इधर--

यह कोई लाइब्रेरी फोटो है जिसमें बहोत सारी कुर्सी रखी हुई है।

नीले कलर के और नीचे--

एक अखबार में पड़ी हुई है बहोत सारे इसमें पड़ी है।

और इन्होंने कानो में लीड लगा रखी सैमसंग की और यह जर्सी शर्ट पहना नीले कलर की जर्सी पहना।

इसकी कटिंग हो रही है।

एक पेटी है अटैची जैसी। इसमे सामान धरा जाय। एक खोलने बैठने की खड़की है इसमें। इसमें --

नील्ले कलर का कलर हो रहा है इसमें इसमें दो पाव भी है।

और ईहां ये सीट है एक टेबल पे एक बोतल धरी है इसमें पैंतालीस और छियालिस नंबर की सीट दिख रही है बिल्कुल बढ़िया।

यह क्या बोलते इसमें जो सामान धर लो ऊपर एक वाई_फाई दिख रही।

उसी साइड में फिर बोर्ड है एक प्लग हुआ है सामने एक जीम की फोटो लगी हुई है।

एक मकान की फोटो है जिसमें दो दरवाजे लगे हुए है एक पे जाली वाला दरवाजा है एक पे जाली वाला नहीं है।

और एक दो जंगले है इसमे इस जंगले के बराबर में--

यह एक कपड़ों की दुकान है।

एक स्टेचू धरा हुआ है इसपे रेडी है और एक--

सेल्फी ले रहा है यह एक फोन है इसमें।

जर्सी है और सिर पे कपड़ा भी है एक के और एक दो तीन बाल्टी लगी है और गमले धरे हुए हैं जिसमे फू --

फूल लगे हुए हैं और इसकी छत पे दो--

इसमें एक आदमी रेडा चला रहा है जिसमें व्हाइट कलर का कुछ रखा हुआ और आगे भी एक व्हाइट कलर का टंगा हुआ--

इसमें ग्रील लगी हुई है इसकी छत पीले रंग का है इसमें छत में फूल सा बना हुआ हैं।

बहुत सारे गमले लगे हुए हैं इसमे।

एक लड़के ने चश्मा शर्ट और पैंट पहन रखी है जिसके गले में चश्मा टंग रहा है यह पेन ले रहा है पे पेपर ले रहा है पहने।

बांस की झोपड़ी बनी हुई है बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं वो तिरंगा--

प्लास्टिक की लुगाई खड़ी है।

ओ एक लुगाई है जो अपनी फोटो खिंचवा रही है लोग लाल कलर का फोटो साड़ी पेहन के पीछे इनके--

आदमी खड़े यह लाइट रंग बिरंगी लाइट जो डी_जे में लगती है।

यह किसी मंदिर का फोटो है जिसमें पांच सात मंदिर है व्हाइट कलर के मंदिर है।

त नीले और वैसी म जर लगी हुई कलर है इसमें जिंना लगा है लोहे का।

परले साइड पीले कलर की दीवार है उसपे अल्ट्राट्रैक लिखा हुआ है इसकी साइड में एक और दीवार गिराई और --

स्टेज लगी हुई है और दो कालीन पड़ी हुई है ब्लैक इस कालीन का कलर ब्लैक और लाल कलर का है इसपे दो लेडीज खड़ी हुई है।